जिसमें एक लड़की योग करती हुई दिखाई दे रही है।

ये स्कूल की ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रही--

ये कोई ऑफिस दिखाई दे रहा है।